हॉल है और यहाँ पठान मूवी चल रहा है देख सकते हैं बढ़िया सब कोई देखने के लिए आया हुआ है और सीट सीट देख सकते हैं बहुत ही --

जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा --

बहुत ही हवाई अड्डा के जैसा दिखाई दे रहा होगा और ये रिमोट कंट्रोल है देख सकते हैं काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा |

अच्छा लोग दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को